एक मम्म एक दुर्गा जी की मूर्ति दिखाई दे रही है। एक पिलर में लगी हुई दिखाई --

उस रूम में एक बोर्ड लगा हुआ है नीचे कवर्ड लगे हुये हैं और उसमें खड़ा--

चच-चर्च मे चर्च लाल कलर का दिखाई दे रहा है।